बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं।

और आदमी के सिर पर एक टोकरी दिखाई दे रही है।

में बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।